मॉल हो एकरा में जैकेट होआ।

जे_सी_बी है और पानी हेय मट्टी हेयकोय-कोय क काम करहल ने कोई नहीं करहलने और वहाँ पे घर है घर में मस्त है।

बड़का को दूकान हैको बिस्कुट हैको अ ललका फूल हैको बहुत चीज हैको उधर दु-दुर्गा माई की फोटो लगल हैको पंखा हैको उज्जर टेबुल हैको हरिहर टेबुल हैको |

बड़कागो गेट सा जल है हेक अ उजल हेक अ दो घूम हेक उधर ऐ फिर बड़का गो एगो अ फुल रखल हे क उधरआदमिनियाँ देख लेरे क उधर सजा रहल हे क।

एगो पानी पऐक हेको एगो आदमी पीला टोपी पहीनले हेको।

बहुत सुहाना मौसम हेको एगो गाड़ी लगल हेको एगो दुगो आदमी खड़ी हेको वृक्ष हेको उधर दुगो मोटर साइकिल हेको।

उज्जर कलर से झपाल हैकोचार पाँच गो ग्राउंड हैको मस्त लगल हैको पनिया गिरल हैको।